वहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स वगेरा रखे हुए हैं और ऊपर चद्दर सेट है |

और आसमान दिखाई दे रहा है नीचे में दिखाई दे रही है | चदर से भी बना हुआ है | कुछ पेड़-पौधे भी लगे हैं ।

मकन भी बने हुए हैं और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमीन भी दिखाई दे रही है कुछ खम्बे वगेैरा लगे हैं |

जमीन दिखाई दे रही है और चेयर भी रखी हुई है | पिररररर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है | कुछ खम्बे वगेरा भी गड़े हुए हैं |

इनका कलर ग्रीन है और यहाँ पे उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ भी लगी है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे बोहत सारी एक्सरसाइज की मशीने रखी हुई --

बित बनी हुई है बाउंड्री उठी हुई दिखाई दे रही है और पिलर खड़े हुए और आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ चूँगी वगेरा लगे हैं |

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे एक चक्र टाइप का बना हुआ है | घांस भी उगी हुई दिखाई दे रही है और रेलिंग भी बनी हुई --